इसमें बिजली को रोकने का और कई सारी चीजो को टेम्परड करने के इक्विप्मन्ट् भी दिए जाते है इसमें कई सारे बटन होते है।

यह एक स्वीमिंग पूल की तस्वीर है हम आस-पास कई सारे पेड़-पोधे देख सकते हैं।

इ-रिक्शा को इंगलिश में इलेट्रोनिक रिक्शा भी कहते हैं। इसमें बेट्री लगी होती है जिससे चार्ज किया जाता है। बिजली से जिससे ये रिक्शा चलता है। इसमें पेट्रोल या डीजल नही डलता।